इस फोटो में मुझे एक गार्डन दिखाइ दे रहा है।

इस फोटो में मुझे गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे केनरा बैंक का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में भेलपुरी का चाट ठेला दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में कुछ बाइक दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक बोट दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बहुत सारे कबूतर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहुत सारी सीनरी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ मंदिर दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे एक पुल दिखाई दे रहा--